यहाँ पर छात्रा आ कर जी.एन.एम. की तैयारिया करते है। येह शहर छात्रावास का चित्र है।

दृश्य में एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो कि सफ़ेद रंग की है।

यहाँ एक गाय घास खाती हुई नजर आ रही है घास के ऊपर कुछ व्यक्ति चलते --

इस दृश्य मे एक रैक के अंदर ऑरेंज ब्लैक ऑरेंज कलर की बॉटल नजर आ रही है यहाँ एक ट्रांसपेरेंट फ्रीज रखा हुआ है।

इस दृश्य में एक लाल दिवार को संतरे सफ़ेद और हरे रंग के गुब्बारों से सजाया गया है।

सामने रेलवे पूल दिखाई दे रहा है प्लेटफार्म पर एक ब्यक्ति दोनों हाथ --